इस इमेज में यहां पर कुछ खाने के पैकेट्स रखे हुए है और उनकी प्राइस भी दिखाई दे रही है।

इस इमेज में यहां पर एक जिम दिखाई दे रही है जहां पर ये लड़का कसरत करता हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर नर्सरी दिखाई दे रही है और यहां पर ढेर सारे पौधे भी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज मे यहां पर एक मस्जिद दिखाई दे रही है और गेट पर तीन चार व्यक्ति खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर जे_सी_बी मशीन दिखाई दे रही है जो गड्ढा खोदती हुई नजर आ रही है।

इस इमेज में यहां पर एक पार्क दिखाई दे रहा है और ऊपर यहां पर बेल भी नजर आ रही है।

इस इमेज मे यहां पर नर्सरी दिखाई दे रही है और काफी सारे यहां पर पौधे भी नज़र आ रहे है।

इस इमेज में यहां पर एक हॉल दिखाई दे रहा है जहां पर टेबल कुर्सी और दीवार पर टी_वी भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में दिखियेगा यहां पर कई सारे स्पीकर दिखाई दे रहे हैं और शर्मा ऑडियो लिखा हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर एक नदी दिखाई दे रही है और बहुत से लोग स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक पुस्तक की दुकान दिखाई दे रही है जहां पर किताबें रखी हुई नजर आ रही हैं।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

इस इमेज में यहां पर एक जिम नजर आ रहा है और यहां पर कुछ लोग कसरत करते हुए भी दिखाई दे रहे है।

इस इमेज में यहां पर कुछ स्कूल के विद्यार्थी लाइन से खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और वहां पर झंडा भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर एक ढाबा नजर आ रहा है बाहर देखिएगा टेबल कुर्सी रखे हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर सामने एक ई_रिक्शा दिखाई दे रही है पीछे पेट्रोल पंप भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर एक काले रंग की गाय माता खड़ी है और पीछे दो व्यक्ति भी खड़े दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में हमें यहां पर एक हाल दिखाई दे रहा है और दीवार पर सुंदर सी पेंटिंग भी नजर आ रही है।